और ऊपर कॉलेज के एक आदमी भी खड़ा है।

और यहां पे दो बोर्ड भी लगे है।

और इनपे ये रंग बिरंगा कलर हो रहा है।

और इनके पीछे एक पल्ली भी पड़ी है।

और उसके पास में कुछ गाड़ी भी खड़ी है।

और यहां पे कुछ पेड़ भी लगे हैं जिनका कलर हरा है।

और एक नीले करम की ड्रमी भी धरी है।

और यहां पे एक काउंटर भी रखा है।

यह एक पार्क है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

और इसमे नीचे हरी हरी घास लग रही है।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

यह एक मंदिर है जिसके बाहर एक सरिये का गेट लगा है।

और यहां पर एक भी लग रहा है।

जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

और यहां पे दो आदमी खड़े हैं।

यहां पे कुछ मछली रखी हुई है और एक मछली लाल कलर की है।

और उसके बराबर में एक बोतल रखी हुई है।

और नीचे एक ल रेड कलर की मैट बिछी है।

और इनके ऊपर कुछ सामान रखा है।